यहाँ भी गुरु जी लोग हैं लेकन को शिक्षित दे रहे हैं स्कूल हैं बारी हैं बगीचा है पेड़ हैं पौधा हैं हर चीज़ है ज्ञान बुद्धि सब देते हैं सरकार भी--

यहाँ पर कोने गा यहाँ पर मंदिर है लोगों का बहुत जनसंख्या मे ज्यादा से ज्यादा भीड़ है।

ये भी मछलीये के दूकान है और ये दूसरे हिसाब से लगाय है एक नंबर दिख रहा है खुबसूरत दिख रहा है। चौरसिया ने अपना--